यह एक डांस क्लास है वहाँ पे बहुत सारी लेडीज जमा हुई है ओ और तीन चार ए.सी. लगे हुए है उस सारी लेडीज ऐसे ऊपर हाथ करके हाथ जोड़कर खड़ी है।